इस दृश्य में एच.डी.एफ.सी बेंक को दिखाया गया है और ए.सी को दिखाया गया है शटर है दरवाजा है।

लाल है और खिड़कियाँ है खिड़कियो पर गिलास है और छत्त है छत्त की दिवार --

दीवारे है दीवारों का रंग हरा है और पास में सड़क है सड़क का रंग--

इस दृश्य में इमारत को दिखाया गया है इमारत में बहुत सारे खिड़कियाँ है।

टाइल्स का रंग सफेद है और सीसे का रंग नीला है और लाल रंग--